इतना बढ़िया किसने लगा रखा है कितना बढ़िया घर बना रखा है उसने।

ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी जगह है बिलकुल पठारों में कितने पठारों के अन्दर कितनी मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना क्या बोले --

ये दृश्य देख सकते है दोस्तों की कितनी --

इतना बढ़ियां कर रखा है न उन्होंने मतलब कुर्सियाँ भी मतलब सफाई ऊपर लाइट वगेरा मतलब वो जब मतलब भगवान मतलब एक तरफ से भगवान का वो उतना अच्छा कर रखा है न।

मेरे भाई बेहनो के लिए देख सकते हो आप मतलब की कितना अच्छा मतलब बना रखा है न ये खाना मतलब बिलकुल --

बना रखा है मतलब मुह में पानी आ जायेगा जब खाओगे एक बार मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है मतलब --

मेरे भाई - बेहेन कितनी ऊँची ईमारत बना रखी है मतलब ये मतलब वो है ना --

भाई मेरे दोस्त मेरे भाई जो देख रहे हैं मेरे को मतलब ये सारे लोग इतनी भीड़ इक्कठा करके मतलब --

और वो मतलब सजावट बिलकुल फूल से सजा रखा है मतलब भीड़ देखो कितनी भीड़ हो रखी है।

बड़ी मोबाइल के बड़े बड़े इतनी बढ़िया शॉप हैं। क्या बोलने मलब इसमें मलब ओरिजनल मलब बढ़िया सा मोबाइल आपको मिल सकतें हैं मलब ।

यहाँ सामने भगवान की फोटो भी लगा रखी है मलब हर चीज हर मोबाइल आपको सब दिख रहे होंगे मलब अच्छे और मलब लाइट भी देख सकते यहाँ पे यहाँ की हर चीज इतनी अच्छी है न क्या बोलू मैं।

और उधर वाला देखो इतना अच्छा है क्या बताऊँ ।

इतना अच्छा बना रखा है न ये मंदिर जो।

और ऊपर ऊँचा कलर देखो इसका पहले हमें यहाँ पे जो आस-पास उसका देखो नज़ारा देखो पेड़ देखो हर चीज देखो इतनी अच्छी --

देखिये पहले कितने बड़े-बड़े पहाड़ हैं आईये देखिये ये नीचे वाला टाइप इतनी बढ़िया --

नीचे नीचे की ढलान इतनी अच्छी है न ऊपर पहाड़ उसमें पेड़ घर भी हैं थोड़े बोहोत |

और पिच्छे उसके पिच्छे भी इतने बड़े बड़े पहाड़ है मलब मस्त बिलकुल और यहाँ पे मजा आयाँ।

और ये समुद्र देखने में इतना अच्छा लग रहा है मतलब इसका पानी का कलर देखो पूरा नीलानीला बिलकुल गाढ़ा नीला हो रखा है पहाड़ देखो ऐसा हो --